हरियाली है बड़े बड़े पेड़ है धूप भी आ रही है आपको देख सकते हैं दो भैया हमें दिख रहे चेयर लगी हुई है सीटिंग के लिए काफी अच्छे फैसिलिटी है यहां पे --

गार्डन दिखाई दे रहा है गार्डन में आप देख सकते हैं यहां पे--

यहां हम देख पा रहे है हमे यहां पर स्टेशन रोड उप डाकघर दिखाई दे रहा है तीस बीस डबल जीरो छः।

यहाँ आप देख सकते हैं यहां पे एक म्यूजिकम बजा रहा है एक लड़का और एक ढोल भी बजा रहा है आस पास कुछ आंटी अंकल खड़े --

जिनके चेहरे ढके हुए है यहां एक भईया हमें दिखाई दे रहे सामने की ओर जो इनको देख रहे है।

फूल काफी फ्रेश और सुंदर दिखाई दे रहे--

यहां हम देख सकते हैं हमें खाली मैदान सा दिखाई दे रहा है इसमें काफी सारी बसें खड़ी है।

बसें आप देख सकते हैं यहां पे चार पांच है उसके पीछे हम एक बिल्डिंग भी देख पा रहे हैं आप देख सकते हैं यहां से काफी अच्छी जगह है।

यहां हम देख पा रहे हैं यहां पे मेन रोड है मेन रोड पे कुछ हम यहां पे रिक्से देखने को मिल रहे हैं हमें यहां पे एक भैया हम देख पा रहे हैं सामने हाजीपुर जंक्शन --

यहां हम देख सकते हैं हमें यहां पे सड़क दिखाई दे रही है।

यहां आप देख पा रहे हैं यहां पे हमें एक अंकल दिखाई दे रहे हैं अंकल नीचे की ओर रिक्शे में कुछ देख रहे हैं।

यहां हम देख सकते हैं हमें सामने एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

यहां हम देख सकते हैं यहां पे महादेव ढाबा है इसपे ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब मिलता है।

हॉल में आप देख सकते कितनी प्यारी और अच्छी तरीके से सामान रखा गया है काफी अच्छी फैसिलिटी है काफी साफ-सुथरा सा रखा गया है इसे --

और यहां पे सभी आप देख सकते हैं बिल्ली बंटे लगा के ऊपर चढ़ के कम कर रहे हैं।

जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहां पे एक बहुत बड़ा हॉल है हॉल में काफी सारी लड़कियां और लेडीसे हमें देखने को मिल रही है उनके चेह चेहरे छुपाए गए हैं।